देखते ही पता लग जा रहा है कि गंगा घाट का यह चित्रण किया गया है यहाँ पे।

जो कि अ अंतिम या शायद पहले इनके जैन धर्म के तीर्थकर थे। उनकी जो जन्मभूमि का एक अ दृश्य ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है।

तपती धूप में एक बुजुर्ग वे उनके साथ एक अन्य यात्री या फिर एक अन्य आदमी उनके साथ --

वाराणसी कैलाशपुरी का यह दृश्य जहाँ पर बहुत की बहुत ही तादात में लोग खड़े हैं वो एक दूसरे की तरफ ना देख --

हर शहर की तरह वाराणसी शहर के नगर निगम का यह जो प्रधान कार्यालय हैं उसकी तस्वीर है।